C प्रोग्राम के पहले स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में मैं समझाने जा रहा हूँकि C प्रोग्राम कैसे लिखें
इसे कम्पाइल कैसे करें
इसे निष्पादित कैसे करें
हम कुछ कॉमन एरर्स और उनके हल के बारे में भी समझायेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबंटु ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110 और G कंपाइलर वर्जन 452 का उपयोग कर रहा हूँ
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको उंबटु ऑपरेटिंग सिस्टम और एक एडिटर की जानकारी होनी चाहिए
विम और गेडिट कुछ एडिटर्स हैं
मैं इस ट्यूटोरियल में गेडिट का उपयोग कर रहा हूँ
संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
जो निम्न लिंक पर प्रदर्शित है
अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि C प्रोग्राम कैसे लिखें
अपने कीबोर्ड पर एक साथ Ctrl Alt और ट कीज़ का उपयोग करके टर्मिनल विंडो खोलें
टेक्स्ट एडिटर खोलने के लिए टर्मिनल में टाइप करें गेडिट स्पेस तल्क डॉट cpp स्पेस एम्परसैंड सिग्न प्रोम्प्ट को मुक्त करने के लिए हम का उपयोग करेंगे
कृपया ध्यान दें कि सभी C फाइल्स का एक्स्टेंशन cpp होगा
अब एंटर दबाएँ
टेक्स्ट एडिटर खुलता है
प्रोग्राम लिखना शुरू करें
टाइप करें डबल स्लैश स्पेस माय फर्स्ट C प्रोग्राम
यहाँ डबल स्लैश लाइन को कमेंट करने के लिए उपयोगी है
कमेंट्स प्रोग्राम के फ्लो को समझाने के लिए उपयोगित हैं
यह प्रलेखन के लिए उपयोगी है
यह हमें प्रोग्राम के बारे में जानकारी देता है
डबल स्लैश को सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं अब एंटर दबाएँ
टाइप करें हाश include स्पेस ओपनिंग एंगल ब्रैकेट क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट यह अच्छी आदत है कि पहले ब्रैकेट्स पूर्ण करें और फिर इसके अंदर लिखना शुरू करें
अब ब्रैकेट में टाइप करें आईओस्ट्रीम यहाँ आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है
इस फाइल में C में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन्स का वर्णन शामिल है
अब एंटर दबाएँ
टाइप करें यूजिंग स्पेस नेमस्पेस स्पेस एसटीडी और सेमीकोलों यूजिंग स्टेटमेंट कंपाइलर को सूचित करता है कि आप एसटीडी नेमस्पेस का उपयोग करना चाहते हैं
नेमस्पेस का उद्देश्य है समान नाम के टकराव से बचना
यह पहचानकर्ताओं के नामों के स्थानीयकृत द्वारा किया जाता है
यह घोषणात्मक क्षेत्र तैयार करता है और अवसर को निर्धारित करता है
जो कुछ भी नेमस्पेस में दर्शाया गया है वो नेमस्पेस के स्कोप में है
यहाँ एसटीडी नेमस्पेस है जिसमें पूरी स्टैंडर्ड C लाइब्रेरी घोषित है
अब एंटर दबाएँ
टाइप करें इंट स्पेस मैन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट मैन एक विशिष्ट फंक्शन है
यह सूचित करता है कि प्रोग्राम का निष्पादन इस लाइन से शुरू होता है
ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं
मैन के आगे पैरेंथेसिस यूजर को दर्शाता है कि मैन एक फंक्शन है
यहाँ इंट मैन फंक्शन कोई आर्गुमेंट्स नहीं लेता और टाइप इंटिजर की वेल्यू वापस करता है
हम डेटा के प्रकारों के बारे में दूसरे ट्यूटोरियल में सीखेंगे
अब मैन फंक्शन के बारे में अधिक जानने के लिए स्लाइड्स पर जाएँ
प्रत्येक प्रोग्राम में एक मैन फंक्शन होना चाहिए
यहाँ एक से अधिक मैन फंक्शन नहीं होने चाहिए
अन्यथा कम्पाइलर प्रोग्राम की शुरूआत का पता नहीं लगा सकेगा
पेरेंथीसेस की खाली जोड़ी दर्शाती है कि मैन में कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है
आर्गुमेंट्स के बारे में आगे के ट्यूटोरियल्स में चर्चा करेंगे
अब अपने प्रोग्राम पर वापस जाएँ
एंटर दबाएँ
ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट टाइप करें
ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट मैन फंक्शन की शुरूआत दर्शाता है
फिर टाइप करें
क्लोजिंग ब्रैकेट मैन फंक्शन की समाप्ति दर्शाता है
अब ब्रैकेट्स के अन्दर दो बार Enter दबाएँ
कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाएँ
इंडेंटेशन कोड को पढ़ने के लिए आसान बनाता है
यह शीघ्रता से एरर्स का पता लगाने में भी मदद करता है
अतः यहाँ स्पेस दें
और टाइप करें काउट स्पेस दो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट यहाँ काउट टर्मिनल पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड C फंक्शन है
अब ब्रैकेट के बाद डबल क्वोट्स में टाइप करें
काउट फंक्शन्स में डबल क्वोट्स के भीतर जो कुछ भी है प्रिंट होगा
अब क्वोट में टाइप करें तल्क टो आ टीचर बैकस्लैश n n नई लाइन को प्रदर्शित करता है
परिणामस्वरूप काउट फंक्शन के एक्जीक्यूशन के बाद कर्सर नई लाइन पर चला जाता है
प्रत्येक C स्टेटमेंट एक सेमीकोलों से समाप्त होना चाहिए
इसलिए इसे इस लाइन के अंत में टाइप करें
सेमीकोलों एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर के रूप में कार्य करता है
एंटर दबाएँ
यहाँ स्पेस दें
और टाइप करें रिटर्न स्पेस 0 और सेमीकोलों यह स्टेटमेंट इंटीजर जीरो देता है
इस फंक्शन के उत्तर में एक इंटीजर प्राप्त होना चाहिए
क्योंकि फंक्शन प्रकार इंट है
रिटर्न स्टेटमेंट एक्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स की समाप्ति को प्रदर्शित करता है
हम रिटर्नड वेल्यू के बारे में अन्य ट्यूटोरियल में और अधिक सीखेंगे
अब फाइल को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें
फाइलों को लगातार सेव करते रहना एक अच्छी आदत है
यह आपको अचानक होने वाले पॉवर कट से बचाएगा
यह एप्लिकेशन्स के क्रैश होने के मामले में भी उपयोगी होगा
अब प्रोग्राम को कंपाइल करें
टर्मिनल पर वापस जाएँ
टाइप करें g स्पेस talkसीपीप स्पेस हाइफेन o स्पेस आउटपुट
यहाँ C प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए g एक उपयोगित कंपाइलर है
talkसीपीप हमारा फाइलनेम है
हाइफेन o आउटपुट से पता चलता है कि एक्जीक्यूटेबल को फाइल आउटपुट में जाना चाहिए
अब एंटर दबाएँ
हम देखते हैं कि प्रोग्राम कंपाइल हो गया है
एलएस हाइफेन lrt टाइप करके हम देख सकते हैं कि बनाई जाने वाली अंतिम फाइल आउटपुट है
प्रोग्राम को निष्पादित करें टाइप करें डॉट स्लैश output और एंटर दबाएँ
यहाँ आउटपुट तल्क टो आ टीचर के रूप में प्रदर्शित होता है
अब सामान्य एरर्स देखते हैं जो आगे आ सकती हैं
एडिटर पर वापस जाएँ
मान लें कि यहाँ हम भूल जाते हैं
अब फाइल सेव करें
निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस जाएँ
अब कंपाइल करें और हमारे द्वारा पहले उपयोगित कमांड का उपयोग करके प्रोग्राम रन करें
हम एक एरर देखते हैं
हम देखते हैं कि यहाँ हमारी talkसीपीप फाइल में लाइन संख्या 7 पर एक एरर है
वह है एक्सपेक्टेड कर्ली ब्रैकेट एटी थे इंड ओएफ इनपुट
अब अपने टेक्स्ट एडिटर पर वापस जाएँ
जैसे मैंने पहले कहा था क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट मैन फंक्शन का अंत दर्शाता है
इसलिए यहाँ ब्रैकेट पुनः प्रविष्ट करें अब फाइल सेव करें
इसे निष्पादित करें
आप यूपी अरो की का उपयोग करके पूर्व में उपयोग की गई कमांड्स को दोहरा सकते हैं
000826 000825 यही मैंने भी अभी किया
हाँ यह कार्य कर रहा है
मैं आपको अन्य सामान्य एरर दिखाऊँगा
अबवापस अपने टेक्स्ट एडिटर पर जाएँ
अब मानिए कि यहाँ हम एसटीडी
भूल जाते हैं
फाइल सेव करें
अपने टर्मिनल पर वापस जाएँ
कंपाइल करें
हम देखते हैं कि यहाँ हमारी talkसीपीप फाइल में लाइन संख्या 3 और लाइन संख्या 6 पर एक एरर है
वह है एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बेफोर सेमीकोलों और काउट वास नोट डिक्लेयर्ड इन थिस स्कोप
क्योंकि काउट स्टैंडर्ड C लाइब्रेरी फंक्शन है
और पूर्ण C लाइब्रेरी फंक्शन एसटीडी नेमस्पेस में निर्दिष्ट है
इसलिए यह एक एरर दे रहा है
अब एरर फिक्स करें
अपने टेक्स्ट एडिटर पर वापस जाएँ टाइप करें एसटीडी इसे सेव करें
इसे फिर से कंपाइल करें
हाँ यह कार्य कर रहा है
एक नियत कार्य के रूप में अपना और शहर का नाम को प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें
हमने इस ट्यूटोरियल में सिंगल लाइन कमेंट का उपयोग किया
अब मल्टीलाइन कमेंट देने की कोशिश करें
इस लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं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
001025 001024 यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है आईआईटी मुंबई की ओर से अब मैंआपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद